एक आदमी अपने मोबाइल से कुछ बात कर रहा है और एक आदमी अपने मचान पर चढ़ा हुआ है ऊपर सीढ़ियों के माध्यम से और दूसरा आदमी कुर्सी को हाथ से पकड़े हुए है।

यह एक स्कूल का चित्र है जो काफी सारे बच्चे अपनी यूनिफ़ोर्म में बेठे हुए हैं कुछ तीन बच्चियाँ खड़ी है और एक बच्ची उधर से फोटो ले रही है।

छठ घाट का दृश्य दिखाया गया है जिसमें बहुत सारी महिलाएं कतारबद्ध तरीके से खड़ी है पानी में।

जिसमें पैसा निकासी और जमा भी किया जा सकता है उसमें बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं बहुत सारा पुरुष बैठा हुआ है यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसका फ्लोर काफी उबड़ा-खबड़ा है बहुत सारा मिट्टी इधर-उधर है।